यहां बड़े अक्षरों में महालक्ष्मी फ्रूट्स लिखा हुआ है।

यहां कुछ पोस्टरे लगे हुए है जिसपे डार्क नाइट लिखा हुआ है।

टेबल पर एक हेलमेट और पानी के बोतल और कुछ सामाने रखें हुई है।

यहां कुछ दरवाजे भी बने हुए हैं जिसमें परदा लगाया गया है।

छत के ऊपर से नीचे पाइप आता हुआ दिखाई दे रहा है।

यहां एक टेबल है जिसमें शीशा लगा हुआ है और कुछ कुर्सियां भी रख हुई है।

यहां शीशे का गेट पे लगा हुआ है।

यहां पे बहुत सारे महिलाएं और पुरुष योगा करते हुए दिख रहे हैं।

गेट में पर्दा भी लगा हुआ है।

नीचे जमीन में हरि हरि घासे उगी है।

सामने बिजली के खंबे और ट्रांसफार्मर भी लगे हुए हैं।

यहां पे कुछ पुरुष डॉक्टर और महिला डॉक्टर भी दिख रहे हैं।

ऊपर सीलिंग फैन लगा हुआ है और साथ में सीलिंग में लाइटें भी लगी हुई हैं।

सामने कुछ बड़े-बड़े बिल्डिंगें भी दिख रहे है यह काफी साफ-सुथरा दिख रहा है।

यहां जिम करने के लिए बहुत सारे इक्विपमेंट लगे हुए हैं सामने एक खिड़की और दरवाजा भी दिख रहा है।

जिसमें बहोत सारे कांच लगाए हुए हैं।

दिवाल में दोनों साईडे पोस्टरे लगी हुई है जिसपे पावर सॉल्यूशन कम इंटरप्राइजेज लिखा हुआ है।

सामने बहुत सारी गाड़ियां दिख रही है जैसे बस दो पहिया वाहन कर ऑटो।

यह एक चश्मा घर का दृश्य दिखाई दे रहा है।

यहां से हाई वोल्टेज वायर भी क्रॉस हो रहे हैं।

बिल्डिंग में बहोत सारी खिड़कियां बनी हुई है जिसमें कांच लगे हुए हैं।

यहां पे बहुत सारी लकड़ी का रैक बनाया गया है।

यहां बड़े अक्षरों में टोयटा लिखा हुआ दिख रहा है।

सामने कुछ पोस्टर पे बन लगे हुए हैं।

यहां कुछ बड़े बड़े पेड़ भी लगे हुए हैं।